यह एक तालाब है यह तालाब काफी बड़ा है।

इस एक-एक पत्थर पर एक लड़का बैठा हुआ है।

इ दुकान में अनेक --

यहाँ पर अनेक सारी कार खड़ी है जो लाइन बाय लाइन खड़ी हैं।

जो अपने मुंह को ढ़की हुई है।

पढ़ने आते हैं यहाँ पर पढ़ाई भी काफी अच्छी होती है।

बहुत से पैसेंजर उतरते हैं यहां बहुत से पैसेंजर इस बस में चढ़ रहे हैं।

यह घर काफी सुंदर दिखाई दे रहा है इस घर के बाहर में--

बच्चे खड़े है जो केक काटने का --

यह पंडाल है काफी पंडाल बड़ा है इस पंडाल पर--